मंदिर है इस मंदिर के अंदर एक मूर्ति बनी हुई है और इस मंदिर के बाहर बहोत सारे लोग खड़े है इस मंदिर को चारो ओर से घेरा गया है और इस मंदिर के बाहर एक बहुत बड़ा आम का पेड़ लगा हुआ है यहाँ बहुत सारे लोग आये हुए है।

एक स्कूल हैं इस स्कूल के बाहर बहुत सारे लड़कियाँ योगा कर रही हैं और यहाँ इस स्कूल में बहुत सारे बस खड़े हैं इस स्कूल के बाहर बहुत बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए हैं यहाँ सभी लड़कियों ने अपने मुँह पे मास्क लगाया हुआ है ।

एक स्कूल है इस स्कूल में एक बहुत बड़ा हॉल है जहाँ पे बहुत सारे टेबुल और कुर्सियाँ रखी हुई हैं इस टेबुल पर बहोत सारे बच्चे बैठ कर यहाँ कुछ बना रहे हैं और यहाँ एक महिला भी इन बच्चों के पास बैठ हुई है ।